ये एक आंगनबाड़ी है जहां पर--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

ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लाह मोहम्मदर रसूलल्लाह--

पार्क के अंदर फूल लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के--

ये एक कैफे हैं कैफे में बहोत सारी --

जहां पर डीजल का काउंटर है।

जहां पर दो लड़के बैठे हुए हैं और फोटोज़ खिंचवा रहे हैं पीछे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ है।

छुप गई है एक बहोत ही विशाल पेड़ से।

ये एक बुक शेल्फ बना हुआ है यहां पर बहोत सारी बुक्स रखी हुई हैं।

और आगे सब लड़कियां हैं लड़कियां अलग अलग कलर की साडिया पहनी हुई है।

और ब्लैक कलर की उसके ऊपर पट्टियां बंदी हुई हैं।

ये एक कबाड़ी की दुकान है जहां पर प्लास्टिक का सामान पड़ा हुआ है बहोत सारा--

ये एक अस्पताल है अस्पताल के मैदान में एक--

यह एक गवर्नमेंट स्कूल है।

टोपा और जर्किन पहने हुए--

ये एक पुराना किला है जहां पर बहुत बड़ा सांप है काले कलर का बहुत बड़ा सांप है।

यह एक मस्जिद है बहुत बड़ी।

यह एक सुनसान रास्ता है।

यह एक स्कूल है जहां पर बहुत सारे बच्चे--

ड्राइंग कर रहे हैं और एक टीचर साड़ी पहने हुए खड़ी देख रही हैं।

स्टेज बना हुआ है जो बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट है।